मुझे इस फोटो पर एक बहोत बड़ा ग्राउंड नजर आ रहा है।

बड़ा सा ब्रिज नजर आ रहा है जिसके नीचे एक--

इस घर के पोर्च में मुझे एक लाल रंग की कार --

वेहे साथ ही एक स्कूटी भी रखी हुई नजर--

रखी हुए एक से नीले रंग के बैड --

बड़ा सा रैग रखा हुआ है जिसमें कुछ मिठाइयां व रसगुल्ले गुलाब जा--

इस रेलवे स्टेशन पर दो स्टील की चेयर बिछी हुई है वह--

स्टेज के ठीक सामने बहोत सारी कुर्सियां--

यह दुकान टायरो वे साइकिल रिपेयरिंग की दुकान हैं।